इस दृश्य के अंदर बहुत ही बड़ा बेड है और इस बेड पर तकिये--

जिसके ऊपर और बस के अंदर काफी--

जो दीवार पे मालाएं लटका रखी हैं और कुछ पैकेट चिप्स के लटका रखे हैं।

दो तस्वीरें दीवार पे लगा रखी है।--

कबीला कैफे हैं और इसके बाहर एक गाड़ी खड़ी--

और उसके ऊपर एक बड़ा सा राव वृक्ष है और इस वृक्ष की छाया में ट्रैक्टर खड़ा है।